दोपहर का समय है और नीचे मै गोंडे का फुल से सजाया गया है बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया --

और बीच मे मटर भी है चटवा भी है और एक ठो धनिया का मिक्सी भी है प्याज कटा हुआ है रात का समय बहुत ही अच्छे से फोटो खिचा गया है।